ये जो लैंटर डलता है या तो छत का लैंटर होगा या कई नम जमीन का लैंटर होगा तो ये कारीगर है जिसमें से मकान बनते दिखाई दे रहे हैं।

ये भी एक मच्छी मार्किट है। जिसमें कई तरीके की आपको मछली दिखाई दे रही --

ये एक आपको बस अड्डा दिखाई दे रहा है जिसमें बस अड्डे मे बोहोत से बसे हैं और लोग ट्रेवल कर कर --

भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं।

न्यू ऑटो स्टैन्ड दिखाई दे रहा है जहाँ पे न्यू ऑटो मिलते हैं और साथ ही में आपको ये ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये न्यू ऑटो रिक्शास वगैरा बनते हैं।

ये यहाँ पे सेल भी होते होंगे तो ये न्यू ऑटो स्टैन्ड ही है तो यहाँ पे ऑटो वाले ऑटो खरीदने के लिए भी आते होंगे।